लेकिन इसमें पैसा है तो जमा नहीं होता है। यहाँ हम देख सकते कि एक लड़का फ़ोटो खींच रहा है। यह खड़ा-खड़ा यहाँ पर फ़ोटो खींच रहा है। ये नया बना हुआ है। लगता है देखने में बहुत सुन्दर लग रहा।

''यह एक पुस्तकालय है और यहाँ पर हर एक फिक्शन वाली किताबे मिलती हैं। यहाँ फिल्म से रिलेटेड सारी किताबे उपलब्द हैं। हम देख सकते हैं की यहाँ कि जो पुस्तकालिये के जो हेड है वह खड़े होके यहाँ एक यहाँ किताब का प्रमोशन करके फोटो खीचा रहे है और इस किताब का नाम है एव्री मेन्स वॉर ।''

यह एक बहुत शानदार किला था और यह किला अभी पूरी तरह से टूट चुकी है। यह किला की बनावट देखते ही बनती है लेकिन यहाँ पर ये किला पूरा ध्वस्त लग रहा है। यह तरह-तरह से हर जगह से टूटी हुई है।

टूटी हुई नजर आ रही है। किला बहोत पुराना है क्योंकि यह किला का बनावट देखते ही बनता है। ये बहोत पुराने राजा-महाराजा ने इसे बनाया था और इस जगह पे स्थित किया था।

य एक क्रिकेट प्लेग्राउंड की तस्वीर है। हम देख सकते हैं कि क्रिकेट का मैदान पूरा तरह से तैयार है और यहाँ पर क्रिकेट खेले जायेंगे। लाइनिंग बोहोत अच्छे से कर दी गयी है। यहाँ पर बाउंड्री भी सेटअप कर दिया गया है।

एक वाटरपार्क है। यह वाटरपार्क काफी ज्यादा शानदार नजर आ रहा है। वाटरपार्क मे काफी सारे कोकोनट ट्री भी लगाये गये हैं। ताकि देखने मे काफी अच्छा लगे यहाँ पर खेलने के लिये हर समान उपलब्ध है। यहाँ पर बच्चो के लिये हर चीज उपलब्ध है। बच्चे यहाँ पे आके खूब एंजॉय कर सकते हैं।

यह पावन छठ का पर्व है। छठ के पर्व में यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ होता है और आस-पास के लोग हम देख सकते हैं की काफी यहाँ पर भीड़ है।

इहां भारत पेट्रोलियम की तस्वीर है। हम देख सकते है कि यहाँ पर बहुत सारी चीज रखी गयी है। यहाँ पर कैस्ट्रोल इंजीन ऑइल बहुत सारे रखे गये हैं।

यह हर पेट्रोल पंप में स्थित होता है। हर पेट्रोल पंप में एक भारत पेट्रोलियम का एक स्टॉल जैसा होता है। उसमें बहुत सारे चीजें जैसे रखी इंजन ऑयल यहाँ पर डीजल बोहोत सस्ते दाम पर मिल जाते है।

यह एक घर के बाहर की तस्वीर है। घर बहुत ज्यादा बड़ा है और घर का गेट भी बोहोत सुन्दर लग रहा है। यह बहुत मंहगा गेट है। इसमें बोहोत तरह की चीजें लगाई गयी हैं।

यह होटल काफी ज्यादा सुन्दर है और यह होटल अंदर से साफ-सुथरा भी है। यहाँ पर खाने बहुत अच्छे से दिया जाता है। हर तरह के भेरायटी हमें यहाँ से मिल जाते हैं। हर तरह का हर तरह का डिश यहाँ पर उपलब्ध है।

ये एक सलून है और हम देख सकते हैं कि एक नाई एक बच्चे के बाल काट रहा है सलून उतना बड़ा तो नही लेकिन सलून में जगह बेठने के लिय काफ़ी है ऊपर एक छोटी सी एक बहौत पुरानी सी टी.वी. लगाईं गई है जिससे पता चलता है की इनके पास --